यहां हम देख सकते हैं कि यह एक सुनार की दुकान है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक--

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक खिलौनो की दुकान है।

कुर्सियां रखी हुई है और टेबल लगे हुए हैं।

गमले भी हम यहां देख सकते हैं।

वहाँ पर दो एक्टिवे खड़ी हुई हैं और लोग उस पर खड़े होकर नहाते हुए दिखाई दे रहें हैं।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

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर स्कूल के कुछ बच्चे--

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक पेट्रोल पंप है जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है कुछ गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक--

फेद रंग की बस खड़ी हुई है।

सामने हम पहाड़ देख सकते हैं।

साथ में बिजली के बोर्ड दिख रहे है।

गमले वगैरा रखे हुए देख सकते हैं। कुछ पिंजरे यहां पर पड़े हुए हैं।